यहां पर बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां पर एक पोस्टर नजर आ रहा है।

यहां पर आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

मिनरल वाटर के पानी के डब्बे नजर आ रहे हैं।

यहां पर कलर कलर के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक कार नजर आ रही है।

यहां पर होटल का पोस्टर नजर आ रहा है।

यहां पर एक ब्लैक कलर का बोर्ड नजर आ रहा है।

पीछे हरे भरे झाड़ा नजर आ रहे एक अदमी सर पर रुमाल लपेट के है।

यहां पर गिट्टियां नजर आ रहे हैं।

यहां पर हरे भरे झाड़ा नजर आ रहे हैं।

यहां पर बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां पर कुर्सियां नजर आ रहे हैं।